ये एक स्टेशन है स्टेशन के बाहर--

एक यहां पर पथरे का स्टैंड बना है जिसमें--

जैसे के मैं देख पा रही हूं यह एक बेकरी का स्टैंड है यहां पर एक--

टेबल के ऊपर कुछ वेफर्स के दिखाई --

बड़ी बड़ी गमले के अंदर पत्तियां उगी हुई है।